बहुत सारा नदी बहुत सारा बड़ी नदी दिखाई दे रहे है पानी दिखाई दे पेड़ दिखाई दे रहे है छोटे - छोटे हरे - हरे नदी के किनारे एक झरना दिखाई दे रहे है आसमान कला उजला दिखाई दे रहा है।

एक क्राफ्टिंग जैसा दिखाईं दे रहा यहां बहुत सारे लाइटिंग खिड़किया और एक बहुत सारे--

बहुत सारी सामग्री दिखाई दे रही है और ये देखने में बहुत खूबसूरत है।

एक सेंट्रल हॉल जैसा दिखाई दे रहा है जिसमे तीन चार वाइट कलर की कुर्सियां बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है।